सामने एक दिवार में घड़ी भी रखी है इलेक्ट्रिक वाली उसमे दो बज के आठ मिनट कुछ हो रहा है।

और यहाँ पानी का मौसम छाया हुआ है बादल पर्पल और स्काई ब्लू कलर के दिख रहे हैं।

यहां एक पहाड़ों की चट्टान दिख रही है चट्टान के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है।